ये घर बनाये गए हैं जो देखे में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर कोई चीज का फोटो लगाया है जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ |

यह देखने में बहुत सारे खी खिड़की बने हुए हैं जो देखने मे बहुत ही अच्छी --

इ देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है ये कलर भी बहुत सा लग रहा हरा कलर के जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ देखिये लाइट लगा हुआ ढ़ेर पंखा भी लगा है व्यक्ति उधर खड़ा भी है।